एक फैक्ट्री है जहां पे कई सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहै हैं कई सारी बोरियां रखी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर हाथ जोड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं कही पंखा लगा दिखा दे रहा है आईना दिखाई दे रहा है कही आ रहे हैं।

कई पर्वत दिखाई दे रहे हैं नीचे एक रोड दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है जोकि लाल सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है कई सफ़ेद सफ़ेद पेड़ --

और बहोत गंदी दिखाई दे रही है पत्थर में कुछ हरा हरा कलर का दिखाई दे रहा है।